होटल का है जो कि देखने में काफी बड़ा और काफी सुंदर है।

हमें पीछे एक आदमी खड़ा भी देखने को मिल रहा है। पीछे की और हमें एक बढ़ा सा इंस्टिट्यूट का पोस्टर लगा हुआ भी दिखाई दे रहा है।

श्य एक मंदिर का है जहां हमें ऋषभ देव की मूर्ति दिखाई दे रही है देखने में यह मूर्ति काफी अच्छी लग रही है।